कुर्सियां भी रखी हुई है पंखे भी बहुत सारे लगे हुए है कुछ व्यक्ति खाना खाने के लिए बैठे हुए दिखाई दे रहे है और कुछ व्यक्ति यहां पर खाना दे रहे है।

यहां पर एक मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है छोटा सा उस पर कुछ जंगले लगे हुए दिखाई दे रहे है और सीढ़ियां भी उसमे लगी हुई हैं।